देख सकते है आपलोग कितना अच्छा लग रहा है मत पूछिए बहुत अच्छा लग रहा है आपलोग भी देख सकते है कितनी सुन्दर लग रहा है यहाँ पे फाउंडर ब्रिज बहोत अच्छा --

यहाँ पे एक भैया खड़े है ये देखिए कितना सुन्दर लग रहे है इसका शर्ट का कलर इतना मस्त हे की मत पूछिए।

रोज है न ऑंऽऽ रोजे फूल है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में कितना अच्छा --

देख सकते है कितना मस्त लग रहा है देखने में लग रहा कि हां कितनी सुन्दर है सुन्दर लग रहा वाह क्या बात है कभी सोचे नहीं होंगे इतना अच्छा नजारा हैं यहां पे। कितनी सुन्दर --

अरे वाह यहां पे भईया जिम भी है देखिए जिम मै कितनी सुन्दर लग रहे है कितनी अच्छा फ़ोन है इनके पास इस फ़ोन से सेल्फी ले रहे है सेल्फी के साथ -साथ पूरा फोटो आ गया इनका कितना मस्त लग रहा है इधर जिम में है बैठे हुए।

क्या बात है! बहोत अच्छा लग रहा है बहोत सुन्दर लग रहा है देखने भी में यह बहोत अच्छा लग रहा। क्या बात है! बहोत सुन्दर लग रहा है जो भी है बहोत अच्छा है बहोत मस्त लग रहे है यहाँ पे देखिए एक टावर है बहोत टावर है कितना अच्छा है यह तस्वीर बहोत अच्छा है साइकिल है उधर बाइक है इधर भी बाइक उधर भी बाइक ।